पानी का डिब्बा भरा रखा गया है वो भी दिख रहा है।

एक रोड दिख रही है वहाँ पर बहुत सारे वाहन रखे हुए हैं।

कोई सफ़ेद रंग का है कोई काले रंग का है कोई गुलाबी रंग का है कोई लाल रंग का है |

मंदिर दिख रहा है वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं लाल रंग के पिले रंग के हरे रंग के।

एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर खिड़कियाँ दिख रहे है दरवाजा दिख रहा है जो कथई रंग और सफेद रंग से पुती हुई है।

एक मंदिर दिख रहा है जहाँ पर लाल रंग और सफेद --

कंप्यूटर रखा हुआ है एक एल.सी.डी. --

तीन-चार लोग खड़े हुए हैं जो की बैग लिए हैं जो काले रंग के है और अलग-अलग रंग के कपड़े पेहने हुए है |

उसका ऊपर का हिस्सा भी दिख रहा है वहाँ पर जालीनुमा डिज़ाइन बनी है वो भी दिख रहा है।

वहाँ पर तार भी दिख रहे है बाजु में बोहोत सारे पेड़ दिख रहे है। जो की हरे-हरे है और बड़े है।

ईसाईयों के गुरु भी खड़े हुए हैं जो हाथ में बाइबल लिए हैं।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ पर दो कार नजर आ रही है।

जहाँ पर मेला टाइप का लगा हुआ है।

ऊपर आसमान दिख रहा है जो की नीला बैगनी और सफ़ेद रंग का नजर आ रहा है।

घर दिखाई दे रहा है। जो की ईंट से बना हुआ है। वहाँ के पेड़ दिख रहे है जो की हरे रंग के है।